यहाँ पे चारो और बच्चे आदमी बूढ़े बेठे हुए नजर आ रहे है और बिच में खिलाडी भी दिखाई दे रहे है चारो और काफी भीड़ हो राखी है इश ग्राउंड में--

इस तस्वीर में नजर आ रहा है की यहा पर मिटटी के चारो ओर मिटटी के तालाब दिखाय दे रहा है उसके चारो और पेड़ पोधे पेड़ पोधे नजर आ रहा है।